एक आदमी ऑरेंज कलर के कुर्ता में बहोत फ्रोंट भी दिखाई दे रहा है।

दीवाल का रंग पीला है एक गेट है जो ब्लू कलर का है।

एक प्रोजेक्ट में रेड कलर के कुछ पक्षियां बनाई हुई हैं।

प्रतीक एक्सरे जहां लिखा है उसके ऊपर दो खिड़की है।

यहां सामने मुझे एक कंपनी नजर आ रही है।

ऊपर में आसमान दिख रहा है जो ब्लू कलर का है आसमान में कुछ बदल बिछाए हुए हैं।

लोहे की बनी है बहोत खंबे लगे हुई हैं।

दूसरा बच्चा जिम करते हुए नजर आ रहा है।

और इस रूम में बहुत सारे गिन के--